हमें देखने को मिल सकता है। भगवान की तस्वीर है लोग है।

बिछा हुआ है बड़ा सा साड़ी।

ये एक दुकान है जिसमें कपड़े टंगे हुए हैं।

बीच आगे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है।

बहोत सारे वस्तुएं हैं जिन्हें बेचने के लिए रखा गया है जैसे कुकर मिक्सर ये सब।

यहां में सामने एक गाड़ी दिख रहा है बोलेरो लोग है और दो स्कूटी रखा गया है।

अलग अलग कंपनियों के लोगो लगे हुए हो।

और पीछे एक बड़ा सा पेड़ लगा है जिसका पीछे एक प्ले ग्राउंड है जिसमें कई सारे गाड़ियां और पेड़ पौधे लगे हुए गाड़ियां भी अलग अलग कलर के है।

दुकान पर कई सारे सामान लगे हुए खाने पीने का सामान--

साइड पर लगा हुआ है ये एक शेर का सर और कुछ फूल पौधे।

प्रिंटर लैपटॉप देखने को मिल सकते हैं हमें --

वे पेड़ पौधे कई सारे लगे हुए हैं।